बहुत सारी साइकिल भी खड़ी हुई है बहुत सारी गाड़ी भी खड़ी हुई है।

टेबल के ऊपर गिलास और जग भी रखा हुआ है पंखा भी लगे हुए हैं लाइट भी लगा हुआ है।